ऊपर की ओर आसमान भी यहां पर दिख रहा है।

यहां पर एक छत दिखाई दे रही है।

पास में ही एक त्रिशूल बना हुआ भी दिख रहा है।

यहाँ पर स्पोर्ट्स गेम चल रहा हैं।

गार्डन में लाल पट्टी बिछी हुई दिख रही है।

दीवार पर काली पट्टी बनी हुई दिख रही है।